पीछे रेत है। सफेद कलर के बादल में फिर बहुत ही अच्छी लग रहे है|

यह वाराणसी का अस्सी घाट है जहाँ पर नीचे पानी का बहाव है दो नाव खड़े है साथ मे दो लड़के है जो सिडिया उतर रहे है।

जहां ढेर सारे पानी की बहाओ है। पानी में दो नाव बांधे हैं।